चॉकलेट कलर का पेंट किया हुआ है और येलो कलर का छत पे पेंट किया हुआ है लाइट जल रही है खिड़की दिख रही है पोस्टर लगा हुआ दिख रहा हैं ।

फर्स दिख रही है ब्लैक कलर का काउच रखा हुआ दिख रहा है रेड कलर का वाइट कलर का बहुत सारी मशीन रखी हुई दिख रही है।

एक ग्राउंड दिख रहा है बड़ा सा जिसमे हल्की-हल्की घास उगी हुई दिख रहे है सीढ़ी दिख रही है।

पेड़ पौधे दिख रहे है सामने अ खम्भे दिख रहे है दो उसपे अ लिखा हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी --

ब्रॉउन कलर का गेट दिख रहा है ब्लू कलर का एक पोस्टर हुआ है ब्लू कलर का --

खिड़की दिख रहे है बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे है तार लगा हुआ दिख रहा है बादल दिख रही है।

ड्रम रखी हुई है ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है ब्राउन कलर की ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है बहोत सारी--

चबूतरा बना हुआ है बहुत सारा अ येलो कलर का ग्रीन कलर का रेड कलर का बहुत सारे लोग दिख रहे है।

बहोत बड़ा हॉल दिख रहा है उसमे गोल्डन कलर का फर्स किया हुआ है बहोत सारे काउंटर दिख रहे है।

उसके मुँह दिख रही है और बाइक दिख रही है डी_जे रखा हुआ है बैलून रखा हुआ है येलो कलर का --

एक पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है ब्लू कलर का खंभा दिख रहा है।

दो खम्भे दिख रहे है पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है एक बस दिख रही है वाइट कलर की महरूम कलर की लाइट जल रही हैं --

उस पे पन्नी चढ़ा हुआ है दिवार दिख रही है वाइट कलर का पेंट किया हुआ--

छोटा-छोटा पौधा लगा हुआ दिख रहा है बिल्डिंग दिख रही है ग्रीन कलर की येलो कलर की वाइट कलर की रेलिंग दिख रही है कपड़े सुख रहे है।

वाइट कलर का पेंट किया हुआ गेट दिख रही है बड़े-बड़े पेड़- पौधे दिख रहे है बादल दिख रही है।